यह एक कॉफी शॉप है यहां बहुत अच्छे कॉफी पिलाते हैं।

यहाँ बहुत सारे मजदुर काम करते हैं एक मशीन ख़राब हो गए हैं ।

ये सभी समर्थक आसन करे हैं ये बहुत बड़ा हॉल --

यह राजगीर तीर्थ स्थान है यह तीर्थ स्थान बहुत ही बड़े हैं यहां बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा करने दूर-दूर से आते हैं यह तीर्थ स्थान बहुत ही

ढोकली एक पेड़ के नीचे कुछ बात कर रहे हैं।